यह एक पार्क है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे है और इसमें बहुत ही कलरफुल पेंट किया हुआ है।

यह एक लाउंड्री की दुकान है जहां एक बहोत सारी साड़ियां रखी हुई है जो कि बहोत ही रंग बिरंग की है।

और उसके दोनों बगल बड़ा बड़ा गिटार है और एक फोटो है जिसमें एक लड़का है और लड़की है जो डांस करते नजर आ रहे है।

और इसके सामने में नारियल का गाछ है जो बहुत सारा है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे दुकान है और इन सारे दुकान के ऊपर एक बड़ा सा होल्डिंग है।

और यहाँ पर चार बड़े-बड़े डी.जे. और दो छोटे डी.जे. है।

यह बाजार का सीन है जहाँ पर बहुत सारे दुकान है पर सारे दुकान बंद है सिर्फ एक दुकान खुला हुआ है।

एक दीवार पर पोस्टर टांगा है जिसमें लिखा है नोबल कोरोना वायरस और नीचे हेल्प डेस्क लिखा है और नीचे सदर अस्पताल अररिया लिखा है।

और एक ब्लैक कलर का चेयर है और सामने एक पोस्टर है जिस पर लिखा है अपोलो डायलिसिस क्लिनिक ।

जो उजला कलर का है और एक गाड़ी जो लाल कलर का है जो पीछे की तरफ से दिख रहा है और एक सामने एक घर है।